या मा ई रिक्शा खड़ु होयुं और समनि मा बोर्ड ई रिक्शा हैंडल पकड़यूं च।

साइड मा भी शायद एक घर बणनू व की ईंट वगरह छन कठा होईं और सामने मां दुई मकान दिखेणा काफी बड़ा छन मकान कुछ फुंगडा दिखेणा जों मा होल लग्युं।

ये एक बहौत बड़ा तालब च और यामा एक ढुंगा मा एक आदिम बैठ्युं च।

यू एक गाड़ी कू गैराज छ ये मा दुई कार खड़ी हुईं छन और एक सफेद रंग की कार छ जै मा वा कू बोनट खुल्युं वां कू कुछ काम कनन गाड़ी तैं ठीक कनन शायद।

यु एक नयू मकान बड़नू च और याका भितर यूकों ईट रखीं न।

यामा एक आदमी खड़ो हुयुं च जोकि अपड़ा पैसा गिन्नू और ये एक फल फलो की दुकान च माँ चंचला।

या मा दुई दुकान दिखेणी एका मा लिख्युं सैमसंग और हाखा मा लिख्युं ताज गिफ्ट एंड टॉयज । एका मा नीलू कलर होयुं और एका मा लाल होयुं। वाका मूड़ी एक दुई बाइक खड़ी हुईन और दुइ साइकिल खड़ी हुईन।

समणे मा एक पहाड़ भी जन जैमा काफी डाला छन लग्यां।

यूं एक छोटू सी रेस्टोरेंट बणयूँ च जे को न च सोनकछि रेस्टोरेंट पुरू चदरंन बडायूं च यूं।

यख मा आग जगणि च जां बिटि कि धुआँ निकल्नु और समणी मा एक कुड़ु च जू कि पुरू डुंगोन बण्यु च और पिछने बिटिन एक खिड़कीन दिखणि वे मा।